यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल पंप के उपर छत्त दिखाई दे रही है छत्त के उपर नीले रंग के कपड़े डले हुए दिख --

यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है दलिया दिखाई दे रही है। दलिया में लाल कलर के टमाटर रखे हुए दिख --

और एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर माइक्रोवेव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बालक पुल पर दो आदमी आते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा दूसरे पुल पर एक आदमी दिखाई दे रहा यही जिसने पिले कलर की टीशर्ट पहनी हुई है।

गाय खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ गाय सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है कोई गायो का रंग चितकबरा दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।